ये एक स्कूल के खेल प्रतियोगिता के दौरान लिया गया फोटो है।

यहाँ पे ये मैडम--

देखने में इ पता चलता है कि कितना प्यारा वाटर पार्क हैं।